इस चित्र में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसका कलर सफेद और पिंक है।

दे रही है और एक हमें पक्की सड़क दिखाई दे रही है।

व्हाइट है और जहां पर हमें ऐ_सी पंखा नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ लाइटे नजर आ रही हैं एक टेंट नजर आ रहा है कुछ लोग इधर उधर जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र मे हमे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है कुछ पेड़ पौधे नज़र आ रहे है। एक खंभा नज़र आ रहा है जिसका रंग ब्राउन है।

जिसका नाम विजय कोल्ड ड्रिंक्स हैं।

वहां पर सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं जहां पर बड़े बड़े दरखत नजर आ रहे हैं।

उसके आगे दो गोड़े नजर आ रहे है रथ पे--

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं एक कैंची गेट नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमे एक खाली मैदान नजर आ रहा है।

एक क्रिस्टेन मंदिर नज़र आ रहा है।

जहां पर कुछ बन आदमी बैठे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें कुछ खाने का दिखाई दे रहा हैं।

नीचे एक काले रंग की प्लेट दिखाई दे रही हैं।

और हरे रंग की चद्दर पड़ी हुईं हैं।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

क्यारियां नजर आ रही है जोकि नीले रंग के बक्से में है।